और उसके बाजू मे एक दुकान है जिसका गेट बंद है और एक नीला कलर का बोर्ड लगा हुआ है दोनों तरफ से बाहर बहुत सारी बाइक खड़ी हुई है नीचे का रोड थोड़ा कच्चा है साइड में एक घर दिख रहा है घर का गेट है ब्लैक कलर है जो बहुत ही प्यारा--

यह एक बहुत ही बड़ा खेत हैं। खेत काफी बड़ा हैं। खेत के चारो तरफ पेड़ ही पेड़ हैं। कुछ छोटे पेड़ हैं। कुछ बड़े पेड़ हैं।

इन्है गार्डन में झूला लगा हुआ है। झूले में बहुत सारे बच्चे हैं। दो बच्ची झूला झूल रहीं हैं और पीछे एक घर दिख रहा है। इसके अंदर लाइट भी है।

यह एक पेट्रोल पंप है। पेट्रोल पंप के सामने दुकान दिख रहा है। शटर जिसका बंद है। पेट्रोल पंप पे दो पे-पंप रखे हुए है। कुछ लोग यहां पे खड़े हुए दिख रहे है।

यह एक बिर्यानी कॉर्नर है। इसके ऊपर म एक व्हाईट कलर का बोर्ड लगा हुआ है। उसमें एक आदमी छपा हुआ दिख रहा है। अंदर लाइट जल रही है।